रेड कलर का इंजन है पिली कलर की ट्रेन है साइड से पाइप जा रहा है और पास मै स्टेशन है फर्श बिछा हुआ है टाइल्स लगी हुइ है।

आसपास मंदिर का झंडा लगा हुआ है और मिट्टी पड़ी हुई है।

पेट्रोल पम्प पे बस खड़ी हुई है। एक बोर्ड लगा हुआ हैं। पेट्रोल पंप ऊपर से नीला और--

जहां एक पतली है यहां एक लायवे टॅक है यहां खंबा है और यहां कैमरे लगे हैं यहां एक लाल कलर की सीढ़ी है।